नमस्कार दोस्तों getting started with for loops पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगेः
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
python 343 और ipython 510
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि lists का उपयोग कैसे करें
यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर संबंधित पाइथन ट्यूटोरियल्स देखें
पहले for loop का सिंटैक्स देखते हैं
for statement प्रत्येक बार block को निष्पादित करते हुए क्रम में एक क्रम के मेम्बर्स पर पुनरावृति करता है
यहाँ loop variable प्रत्येक पुनरावृति पर क्रम में आइटम की वेल्यू लेता है
प्रत्येक आइटम के लिए loop body निष्पादित होती है
हम for loop का एक उदाहरण देखेंगे और देखेंगे कि इसे निष्पादित कैसे करें
पहले ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
अब ipython3 टाइप करें और एंटर दबाएं
pylab package आरंभ करें
अपना text editor खोलें
for loop लिखें यहाँ दिखाए गए अनुसार कोड टाइप करें
यहाँ लूप वेरिएबल नम्बर्स की सूची पर पुनरावृति करता है और प्रत्येक नम्बर का वर्गमूल ज्ञात करता है
नम्बर्स हैं: 4 9 16 25 और 36
ध्यान दें यहाँ हमने दो वेरिएबल्स numbers का उपयोग किया जो नम्बर्स की list है
num जो for loop के प्रत्येक आवर्तन में विचाराधीन list का एलिमेंट है वेरिएबल का नाम आपकी पसंद का कुछ भी हो सकता है
ध्यान दें कि for statement के बाद कॉलन loop body की शुरूआत दर्शाता है
loop में प्रत्येक statement 4 स्पेसेस से शुरू होता है
इसका अर्थ है कि लाइन for loop में कोड का ब्लॉक है
इस उदाहरण में यह block में केवल सिंगल statement है
ध्यान दें कि लाइन printthis is outside forloop इंडेंटेड नहीं है
और उसके बाद की लाइन्स for loop के दायरे में नहीं आती हैं
इसलिए प्रत्येक ब्लॉक इंडेंटेशन लेवल द्वारा पृथक होता है
home directory में sqrt_num_listpy के रूप में फाइल सेव करें
अब वापस टर्मिनल पर जाएं टर्मिनल साफ करें
percent run minus i filename के रूप में रन कमांड का उपयोग करके स्क्रिप्ट को रन करें और एंटर दबाएं
हमें for loop द्वारा निष्पादित दिए गए नम्बर्स का वर्गमूल प्रात होता है
यह for loop के बाद निष्पादित print statement आउटपुट है
समान उदाहरण का उपयोग करें जिसे हमने sqrt_num_listpy में उपयोग किया
ipython interpreter prompt में कोड की प्रत्येक लाइन टाइप करें
printthis is outside forloop लाइन छोड़ दें
टर्मिनल पर जाएं
टाइप करें numbers equal to square brackets में 4 9 16 25 36 और एंटर दबाएं
for num in numbers colon एंटर दबाएं
आप देखेंगे कि prompt तीन डॉट्स में बदल गया है
कृपया ध्यान दें कि ipython स्वतः ही block को इंडेंट करता है
अब बाकी for loop टाइप करें
हमने block में statements पूर्ण कर लिया है लेकिन अभी भी interpreter तीन डॉट्स दिखा रहा है
इसका अर्थ है कि आप अभी भी ब्लॉक के अंदर हैं
ब्लॉक से बाहर आने के लिए कुछ अन्य प्रविष्ट किए बिना एंटर की दो बार दबाएं
इसने लिस्ट में प्रत्येक नम्बर का वर्गमूल प्रिंट किया जो for loop में निष्पादित किया गया
आगे हम python में range builtin function के बारे में देखेंगे
range फंक्शन integers की लिस्ट बनाता है
सिंटैक्स है: range start comma stop comma step
उदाहरणस्वरूप: range parentheses में one comma twenty comma two 2 के स्टेप के साथ 1 से 19 तक इंटिजर्स बनाता है
range parentheses में twenty 0 से 19 तक इंटिजर्स बनाता है
ध्यान दें कि अंतिम नम्बर जो आपने निर्दिष्ट किया list में शामिल नहीं होगा
एक से दस तक सभी नम्बर्स का घन ज्ञात करें इसे python interpreter में निष्पादित करें
अब पाइथन टर्मिनल विंडो में for loop रन करने का प्रयास करें
ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर नया टर्मिनल खोलें
नए टर्मिनल में कमांड python टाइप करके python interpreter शुरू करें और एंटर दबाएं
टाइप करें for i in range parentheses में one comma eleven colon और एंटर दबाएं
हम देखेंगे कि इस समय यह तीन डॉट्स दिखाता है लेकिन कर्सर डॉट्स के नजदीक है अतः हमें ब्लॉक को इंडेंट करना होगा
python interpreter कोड को स्वतः इंडेंट नहीं करता है अतः चार स्पेसेस प्रविष्ट करें और फिर निम्न टाइप करें
print parentheses में i comma inside quotes cube is comma i रेज्ड टू पावर ऑफ़ थ्री एंटर दबाएं
अब जब हम एंटर दबाते हैं हमें अभी भी तीन डॉट्स दिखते हैं ब्लॉक से बाहर आने के लिए एक बार फिर से एंटर दबाएं
अतः मुख्य बात हमने यहाँ यह सीखी कि python interpreter और blocks को निर्दिष्ट करने के लिए ipython interpreter का उपयोग कैसे करें
1 से 50 तक सभी ऑड odd नम्बर्स को प्रिंट करें
आसानी के लिए इसे अपने ipython interpreter में करें
प्रश्न range फंक्शन का उपयोग करके हल हो सकता है
terminal साफ करें
for i in range parentheses में one comma fifty comma two colon
पहला parameter क्रम का शुरूआती नम्बर है
दूसरा parameter range का अंत है
ध्यान दें कि क्रम में अंतिम नम्बर शामिल नहीं है
यहाँ हम दो रखेंगे जिसका अर्थ है कि हम प्रत्येक दूसरा एलिमेंट छोड़ रहे हैं
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
कोड के ब्लॉक को इंडेंट करना
for loop का उपयोग करके लिस्ट में पुनरावृति करना और range फंक्शन का उपयोग करना
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
1 से 20 तक सभी नैचरल नम्बर का गुणनफल प्रिंट करने के लिए for loop लिखें
और उत्तर हैं
2 y equal to one
y into equal to x
3 range1 5 1 से 4 तक इंटिजर्स की लिस्ट तैयार करता है अर्थात 1234
कृपया अपनी समयबद्ध queries इस forum में post करें
कृपया पाइथन पर अपनी सामान्य क्वेरी इस फोरम में पोस्ट करें
fossee टीम tbc प्रोजेक्ट का संयोजन करती है
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद